और यहाँ पे लोहे कि जाली लगी हुई है मोटी और उसके आगे पेड़ पौधे लगे हुए है और नीचे जमीन है।

अर् है जो सफेद कलर कि है और यहाँ पे ए गेट है।

ऑर एक जनरेटर लगा हुआ है ऑर एक टेबल बिछी हुई है ऑर यहां पे --

चेयर रखी है जो लाल कलर की है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। ऊपर पंखे हैं दो।

कप प्लेट रखी हुई है जूठी जिन्होंने खाना लग रखी हैं।

खंबे लगे हुए है बहुत सारे जहा से तार जा रहे है| उसके पीछे पेड़ है बहुत सारे।

ओप और एक डिब्बा में बॉक्स है जिसमें आलू रखे हुए हैं और यहाँ पे कट्टा है जो लाल कलर का जो जाली जिसमें जाली लगी --

कोई लोग आ रहे हैं कुछ लोग खड़े हैं साइड में डंडे लगे हुए हैं लोहे के।

साइड में एक घड़ी भी है और एक टेबल है बैठने के लिए और जो इन्होंने टीशर्ट पहन रखी है। कुछ ने कुछ ने शॉर्टस पहन रखी है और ये नीचे जमीन है। वो हरे --

एक बाइक खड़ी है। एक हेलमेट है। बाइक जो है वो बुलेट है। बुलेट ए रॉयल एन्फील्ड की है।

यहाँ पे टेबल यहाँ पर चेयर रखी हुई है। एक दो एक तरफ है और एक आगे पीछे है। यहाँ --

नीचे दरी बिछी हुई है जो जिसपे डिज़ाइन बने हुए हैं जो ऑरेंज और लाल कलर के हैं। यहाँ पे सोफे बिछे हुए हैं जो सफ़ेद कलर के हैं।

यहाँ पे एक आदमी है जो काम कर रहा है और इस पे एक लोहे का पिलर लोहे का खंभा है। इसे ठीक कर रहा है और इसने --